दे रहे हैं एक गार्डन दिखाई--

दे रहे हैं। बहोत सारे पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

दे रहा है एक पेड़ दिखाई--

रहे हैं चार पुरुष दिखाई--

दे रही है एक सोफ़ा दिख रहा--